कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं।

पे बहोत सारे मुर्गीया दिखाई दे रही है।

यहां पे हमें काफी अ एक दिख रहा है।

यहां हमें एक स्टेज दिख रहा है।

इस फोटो में हमे यहां पे खाने का स्टाल लगा हुआ दिख रहा है।

यहां हमें नीला-नीला आकाश दिख रहा है।